हरनो का कलर गोल्डन है और उन पर भाईट भाईट कलर के स्पॉट बने हुए हैं।

यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जिसमें एक बूढ़ी औरत है और एक और लड़की खड़ी हुई है।